यह एक कोचिंग सेंटर है।

ने के लिये फुटबॉल खेलने के लिये --

रे बड़े-बड़े पेड़ भी लगी हुई है।

यहाँ पे एक डॉक्टर भीम राव अंबेडकर --

बहोत ही बड़ी है। पहाड़ में बोहोत बड़े-बड़े --

यह एक नदी है। यह नदी में --

बहोत सारे लेडीज आ --

घरों के लोग यहाँ पे आते हैं।

बोहोत सारे आदमी रहने के लिये --

यह एक गैरेज है। यह गैरेज में --

यह एक बैंक है।